ये बिल्डिंग है वाइट एंड पियाजी कलर में है यहाँ पे पेड़ है एक और बाकि झाड़ियाँ रखी हुई है।

ये एक रोड है जिसकी बाउंड्री सीमेंटेट की बनी हुई है जिसमे बी_एम_डब्ल्यू एक आदमी चला रहा है।

ये अ एक मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पेड़-पौधे लगे हुए है छोटे-छोटे सी झाड़ियाँ भी है।

और इसमें कोचिंग क्लास चलती है। कॉमर्स की उसके बाजु में अ नीले कलर का गेट बना हुआ है एंड पीछे केले का पेड़ है।

ये एक जिम है जिसमे ऑरेंज एंड मरून कलर के बलून्स लगे हुए हैं। --